ये दीवाल दिखाई दे रही जिसका कलर व्हाइट है यहां पे कुछ लोगो की मूर्तियां भी दिखाई दे रही और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर गोल्डन है यहां पे एक नीचे टेबल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा | कुछ बिजली की तार भी दिखाई दे रही हैं।